यहां बहुत सब लड़का एक खोलर में बैठकर है और एक लड़का गंजी पहनकर है और एक लड़का टी-शर्ट पहनकर है| एक लड़का का बाल एकदम कटिंग सा कटा हुआ है।

पीला-पीला कलर का फूल का पत्तियां है लाल फूल है यहां उम्म झंडा टाइप का कुछ ईधर से उधर रस्सी खिचा हुआ है पानी है रखा --

पानी बहुत गहरा लग रहा है हमको यहां से अंदाजा लग रहा है कि बच्चे अगर गिरेंगे तो डूब जाएंगे बच्चे काला शर्ट पहेन के टी-शर्ट पहेन के पेन्ट पहेन के --

ये गाड़ी चार चक्का गाड़ी का गैरेज है।

एक आदमी का स्वेटर में स्वेटर लाल है एक आदमी का उम पैंट हरा है वो जीन्स पैंट पहन के है।

ये सब जिम कर रहे है सारे के सारे सफेद ड्रेस में है सबकी कमर में पीला पट्टी लगा हुआ है ये सब कराटा बाजी करना चाहते हैं साइड में बगल में एक खंभा है इधर एक दीवार है।